के दुकान पर बहोत सारे कपरा दिख रहे है।

इस फोटो पर ऊपर की सीलिंग का कलर वाइट कलर है।

इस फोटो पर दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो पर हमें दुकान के सामने कई सारे इंसान भी दिख रहे हैं।

चित्र पर एक येलो कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो पर हमें एक शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहे हैं।

के बाहर थोड़े पानी जमा हो रहे हैं।

इस फोटो पर हमें कई सारे भुट्टा नजर आ रहे हैं।

इस फोटो पर हमें एक रास्ता दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में स्टैचू के नीचे ब्लू कलर की टाइल्स है।

फोटो में एक रेल भी दिखाई दे रहे हैं।

नर्सरी में ग्रीन कलर की नेट दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो एक मंदिर की है।

इस चित्र में दो ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एस_बी_आई का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो पर एक पुरानी से बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप में एक रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ लड़का दिख रही है।

इस फोटो पर हमें एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस फोटो पर हमें एक रेड कलर कि बस दिखाई दे दे रही है।

इस फोटो पर दोनों लड़का और लड़की के हाथ में एक एक माइक है।

इस चित्र पर हमें एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।